पैन भी रखा प्रोवाइड किया है इन्होंने ये आईसीयू है।

इस पिक्चर में मुझे स्कूटीज दिखाई दे रही है चेयर्स दिखाई दे रही है स्कूटीज नहीं चल रही है ये बस रुकी हुई है।

मैं देख रही हूं कि वहां पर फोटोस लगे हुए हैं।

होटल वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट .

वहां पर एक सिक्योटी गार्ड भी खड़ा है मीटर्ड एरिया है बहुत अच्छे से वहां पर उन्होंने एक बंधा भी रख --

पार्किंग भी इन्होंने अच्छे से रखी है वहां पर अच्छे से फूल भी लगे हुए हैं।

और हमें वेट्स है इन्होंने अच्छे से वहां पर रखा है मैटिंग करके फैंस अवेलेबल हैऔर ये जो ड्रिम ट्रेनर है पानी पी रहा है।

डांस कर रही है इसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई है इसके माथे पर येलो कलर का चौक लगा हुआ है।

वहां पर कुछ फूल लगे हुए हैं ये सारे मेले में जमा हो गए हैं वहां पर बड़े-बड़े।

ये एक स्टैचू हैवहां पर मिलट्री स्टैचू .

अच्छे जो कि नॉमिनेटेड आर्मी बंदा होगा उसी का है।

वहां पर इंडियन झंडा भी लगा हुआ हैऔर ग्रीनरी भी लगी हुई है यह बहुत अच्छी पार्क है।

यह एक नाई की दुकान है इसमें चार-पांच बंदे खड़ा है और नाई के पास हर एक किस्म की।

इसमें बहुत अच्छे-अच्छे कलर से।

यह एक डाबा है वहां पर कुर्सियां लगी हुई है।

जब मुझे कप के लिए वहां पर डस्टबिन्स प्रोवाइड किए हुए है फैन भी है एग्जॉस्ट फैन भी लगे--

यह जो बंदा है यह वहां पर खड़े हैं वेट कर रहे हैं अपनी चाय का--

ये एक किरियाने की दुकान है इसमें हर एक किस्म की--

जरू रात ची खाने की चीजें है मुयसर है टॉफीज है।

और जो हरपाल सिंह का है ये कुछ इसमें रस्सी लगा रहा है या वायर है।

वहां पर कुछ फार्मिंग हो रही है।

जी_एच मुझे दिखाई दे रहा है और इसकी जो सीलिंग है ना वो--

लाइट से भरी हुई है बहुत खूबसूरत लाइट से भरी हुई है वहां पर मुझे एक रोड्स भी दिख रही है।

ये दो शॉप्स है वहां पर वहां पर एक का नाम है विश्वकर्मा मोटर गैराज और दूसरे का नाम है।

पीछे से इनके बहुत बड़े खेत जहां से बस।

ठीक है इसमें बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या पुलिस कह रही है? अच्छे से।

जहां पर जैकेट्स है फार वाले डमी में स्टैचू में लगाए हुए हैं कपड़े--

पैंट्स है शर्ट्स है और उसमें बहुत सारे कपड़े हैं वहां पर फ्लैट ऑफर भी दिया जा रहा है वहां पर--

ये एक प्लेग्राउंड हैजहां पर बच्चे खेल रहे हैं।

ये एक ज्वेलरी उम् सेट है जिसमें इयररिंग्स इतने बड़े-बड़े खूबसूरत कुंधन वाले हैं।

साइन लगी हुई है रेड कलर के पर्स है लगे हुए हैं और इसका जो एरिंग का नीचे वाला झूमर है।

इस शॉप का नाम है भंडारी ब्रोस यह बहुत अच्छे से बहुत सारी रिटेलिक --

एक साथ भी है एक बंदे वहां पर इसमें रेड कलर का कापट डाला हुआ है इसमें।

ये डेकोरेशन यहां पर की गई है वहां पर पीकॉक की जो टेल है उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं।

इसमें ग्रीन कार्पेट लगा हुआ है इसमें एक राइट साइड प्लांट लगे हुए हैं।

मैं इस पिक्चर में ग्रीनरी देख रही हूं बहुत अच्छी में रही है।

बहुत अच्छी पेक आ रही है नेचुरल पिक नेचुरल वेव आ रहा है जिसमें मुझे दरिया दिख रहा है दरिया।

ये सोलर पैनल्स लगी हुई हैजहां पर।

एंड ग्रीन जो मुझे दिखाई दे रहे है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं इन्हें छत पर नहीं रखा है इन्हें नीचे ही रखा है जहां पर हमें दिखाई दे रहा--

यहां पर दिया है पम्पलेट जिसमें लिखा होता हैफूड ऑर्डरिंग वगैरह के लिए क्या-क्या करना --

पेपर बोर्ड भी है जहां पे पेपर स्टिच करके है।

गमलेभी है बहुत अच्छी फ्लोवर्स भी है छोटी-छोटी--

फ्लोर की है बड़ी इसमें टाइगर मन की।